एक व्यक्ति चस्मा पहने हुए है हाथ मैं एक--

पीछे की दिवार का रंग हरा नज़र--

तरफ ईटों की आकृति जैसी टॉइले लगाई गई है तथा नीचे की तरफ मच --

नज़र आ रहे है जो की काले रंग के है जिसके साथ--

पुरे का रंग हल्का सा संत्री प्रतीत हो रहा है तथा ऊपर का आसमान नीला भी--

नीला तथा लाल रंग मौजूद है ऊपर की जगह तथा आस-पास के वृक्ष साफ़ देखे जा सकते है वृक्ष हरे रंग के तथा--

पास ही मै एक टेंट भी देखा जा सकता है जिसके पास ही में--

पीछे की तरफ का आसमान भी देखा जा सकता है जिसके सास--